यहां पर गेट भी नज़र आ रहा हैं और यहां पर लाइट्स भी जलती दिखाई दे रही हैं।

इस इमेज मे सामने यहां पर एक ए_टी_म दिखाई दे रहा है।

जहां पर मूली के बंच नजर आ रहे हैं और यहां पर सामने कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर कुछ पेड़ भी नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में सामने यहां पर--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

सामने यहां पर टीचर भी खड़े दिखाई दे रहे हैं।

इस इमेज में सामने यहां पर एक पहाड़ दिखाई दे रहा है यहां पर सामने कुछ लोग नजर आ रहे हैं।

और यहां पर सामने खिड़की भी दिखाई दे रही हैं।

इस इमेज में सामने यहां पर एक पुल दिखाई दे रहा है नीचे यहां पर पानी भरा है।

सामने यहाँ पर क्यू_आर कोड रखा हुआ हैं और यहाँ पर कोल्ड्रिंक्स कि बॉटल भी नजर आ रही हैं।

इस इमेज में सामने यहां पर एक पार्टी चल रही है।

इस इमेज में सामने यहां पर बनारसी साड़ी की दुकान दिखाई दे रही है सामने यहां पर --

सामने यहां पर का भी नजर आ रही है।